खड़े किए हुए पिलर्स और गेट भी दिखाई दे रहा।

बढ़ने पर कुछ बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही हैं इस--

तरफ हरि हरि घासे और यहां बड़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

है चनपटिया थाना पश्चिम चंपारण बेतिया ऊपर ही लिखल है और इस थाना के--

ई नजर आढ़ल है हमे मंदिर--